गया से पटना के थ्रू जाती है जहानाबाद होते हुए इसका रूट है जो में लगा रहता है। इसका बस स्टैंड नागपुर में है जो कि बोहत ही अच्छा --